ये जो स शिवजी की मूर्ति स्थित हुई एक छोटी लड़की वो उसे देख रही और ये लड़का वहां फोटो निकलवा--

ये जो लड़का है ये जो देखिए आम का पेड़ लगा रहा है और ये देखिए आम का पेड़ लगा रहा है वैसे पेड़ लगाना बहोत अच्छी बात है क्यूंकि पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलती है ना--

ये सुकम के लोग हैं जिन्होंने होली खेली--

ये भाई ये अपने सिक्स पैक दिखा रहा हैं ये देखिए जिम आके इसने अपने सिक्स पैक बनाए हैंऔर उन सिक्स पैक को ये बता--

और ये देखिए कितनी सारी मछली रखी है ये मछली पालन करता है और मछलियों से पैसे कमाता है।

यहाँ पे जो इन्सान खड़ा है ये फ्लावर बेच रहा है मतलब की ये फ्लाउअर की नर्सरी है जहाँ पर ये प्लांट वगेरा बेच रहा है।

ये नदी में जा कर विसर्जन करेगे और उसके बाद उनके साथ दो तीन महिला है वो भी इने कोई पूजन की थी उन समान को विसर्जन जा रहे है।